इस तस्वीर में हमें बहुत से हरे पौधों को दिखाया गया है।

वहीं बाहर की ओर कुछ गाड़ियाँ औ कुछ व्यक्ति ओरतें खड़े हैं।

यहाँ पर दो ट्रेनों को दिखाया गया है वहीं आस-पास बहुत से लोग खड़े है एवं बहुत से लोग चल रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें सामने की ओर एक नदी को दिखाया गया है।

वहीं पीछे की ओर एक नारंगी नीले व सफेद रंग में बोर्ड लगा है जिस पर इण्डियन ऑइल लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है जहाँ पर कुछ लोग --

यह तस्वीर रात के समय ली गई है जहां पर एक पेट्रोल पंप को दिखाया गया है।